और यहाँ पर कांच के बहुत ओ चीज नजर आ रहे है खिड़किया और यहाँ बड़े-बड़े ओ चीज नजर आ रहे है पिलर और यहाँ पर बहुत अच्छा-अच्छा घर है।

यहाँ बस आदमी का आधा बाल काट चुके है ओ काट रा है टी वी दिख रा है बोतल दिख रा है बहोत सारे बोटल ट डीसाइन दिख रा है आईना दिख रा है वहा पर बाल-- बाल का डीसाइन दिख रहा है और मेको कपड़ा दिख ए आदमी मे लटकाया हुआ।

यहाँ पस मेरे को एक ठो खंडर दिख रहा हैं डबल तल का एक ठो आदमी देखने आया एक ठो बुढ़ऊ भेजरे से दिख रहा हैं यहाँ पर बहुर सारे बड़े बड़े खंडर हैं यहाँ पर थोड़ा अच्छा--